नीचे काफी धूरा है मिट्टी है पत्ता दिख रहा --

यहां पर दो कुर्सी दिखाई दे रहा है।

लंबा सा बिल्डिंग है यहां इसका बड़ा सा हॉल है।

ये रंग बिरंगे कलर का है सब धरखा पे रखा हुआ जैसे लग रहा है।

और सामने मशीन रखा हुआ है।

एक लड़का है और एक बुजुर्ग आदमी है जो सामने खड़े हैं।

ऊपर तार पार हुआ है और तार में बहुत सारा गांठ है।

एक लाल कलर का डस्टबिन रखा हुआ है।

और अंदर ढेर सारा जूता और टीशर्ट रखा हुआ है।